दो ठो चेयर भी दिखाई दे रहा है।

एक कपड़ा भी सुखाके दिखाई दे रहा है।

पैरोट का पास तीन थु बाटी दिखाई दे रहा है।

और एक सीढ़ी भी दिखाई दे रहा है।

और एक डस्टबिन भी दिखाई दे रहा है।

घर के बाहर में एस_बी_आई का बैनर दिखाई दे रहा है।

ए तस्वीर में एक वॉल दिखाई दे रहा है।

पीछे में एक अंब्रेला भी दिखाई दे रहा हैं।

घर के नीचे में बहोत सारा बाइक दिखाई दे रहा है।

यहां पर दो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

इनमें घर भी दिखाई दे रहा है।

फिर एक बाकेट भी दिखाई दे रहा है।

फ़्लैग भी दिखाई दे रहा है।

और एक कार भी दिखाई दे रहा है।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

कपड़ा भी सूखा के दिखाई दे रहा है।

आ बल्ब भी जलते हुए दिखाई दे रहा है।

चिड़ियां के पीछे में व्हाइट कलर फेदर भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक लाइब्रेरी दिखाई दे रहा है।

इस तरह किनार में एक कार भी दिखाई दे रहा है।

फिर एक लड़की के पास प्लास्टिक बैग भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक गच्चा दिखाई दे रहा है।

नीचे ईटा भी दिखाई दे रहा है।

ऊपर में तीन लड़का दिखाई दे रहा है।

लकड़ी का टुकड़ा भी दिखाई दे रहा है।

सीढ़ी मे बहुत सारा फ्लावर पॉट भी दिखाई दे रहा है।